यहा एक बेंच पे खाना रखा हुआ है और खाना मे और सलाड भी रखा हुवा है।

एक पार्क है यहां पर बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं और ग्रीन कलर के पेड़ भी हैं और पहाड़ भी हैकार भी है और यहां पर एक वाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है और खंबे भी लगे हुए हैं।

ये पेड़ पौधे वाले नर्सरी है यहाँ पे बहुत से फ्लावर्स रखे हुए हैं और पॉट्स भी रखे हुए हैं।

ये एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है स्विमिंग पूल में येलो कलर की छतरी लगी हुई है।

यहां पे एक ट्री भी नजर आ रहा है और यहां फर्श पर पानी पड़ा हुआ है और येलो और ब्लैक कलर के नजर आ रहा है यह एक पत्थर का घर है।

या यह घर है यहां पे ब्लैक कलर की जालियां लगी हुई है और ब्लैक कलर के खंभे भी लगे हुए हैं।

ये कॉलेज है कॉलेज में बहुत बड़ी बोहोत बड़ा कॉलेज है व्हाइट कलर का कॉलेज है यहाँ रेड कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है।

पे कुछ लिखा है यहा पे बुक भी रखी हुई है और यह पे ब्लैक कलर की जालीवाला गेट है और यह ब्लू कलर की जाली वाला भी है।

यह एक घर है यहां व्हाइट घर है यहां व्हाइट घर ही बहुत से व्हाइट घर है यहां व्हाइट घर के ऊपर एक ट्री ग्रीन कलर का ट्री नजर आ रहा है।

ये एक शॉप है ये बैग की शॉप है और सामान भी रखा हुआ है यहां बहुत से बैग नजर आ रहे हैं।

ये एक घर है घर पर टेरेस पे बहुत से पौधे लगे हुए है यहा पिंक कलर का एक बॉक्स रखा हुआ है और ब येलो कलर की बास्केट रखी हुई हैं।

ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई हे बिल्डिंग व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी यहा पर एक घर भी नजर आ रहा हे।